और उधर स्कूल है।

और बहुत सुंदर लग रहा है दरी बिछाले हरा कलर का और नीचे और बहुत सुंदर --

यहाँ पर कुछ हो रहा है और यहाँ पर सब घेरा लगा हुआ है और बहुत सारे आ --

टी.वी. है पंखा है खिड़की है दरवाजा है।

और मैम चित्र बांट रहे है ऊ लो --

घर है पेड़-पौधे है घर पे लगाया हुआ है और बहुत --

रात के समय है आदमी भी बैठे हुए हैं।

यहां पे बाजार आए हुए है लड़के-लड़की लोग।

ये बगीचा है यहां पर झूले हैं खटिए है और --

यहां पे एक दुकान है और आदमी भी बैठे होंगे हमें दिख नहीं रहे है।

बिस्किट है सर्फ है डिब्बा है निमकी है दालमोट है।

सेब हैऔर सरफ है और साबुन है।

और कुछ होगा मट्टी का धरती है और पणिक है अमृत का गाछ है।

कुर्सी है अ दो आदमी नीचु में बैठ करके भजन गा रहे हैं और आदमी --

और झाड़ियों में कोई छुपा होगा बहुत सुंदर लग रहे है।

और अगरबत्ती जले हुए हैं मोमबत्ती हैं और दिये --

हम दोस्त सब के यहां यहां लाइट जल रहे हे हे लाइट है।

और कुछ का पेड़ होगा हमें दिख नहीं रहें हैं इधर पीछे में फील्ड बनें हुए हैं।

और ये काल्हे गए थे हम नहीं गए थे घूमने और हाथ अइसे करे --